ये देखो ये जो ऊपर पहाड़ी है और नीचे मतलब की गुफा है जहाँ से लोग ये जा रहे है और ऊपर से पानी पानी आरा है काफी अच्छा नजारा है --

कुछ लोग नहा रहे है ऊपर से पानी गिर रहा है ऊपर से पहाड़ी और नीचे आके पानी गिर रहा है काफी अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा नजारा है।

ये देखिये पहाड़ी जो दिख रही है वो जो की अं स्विमिंग पूल के पास है और राईट साइड्स घर है।

और खे खेत भी है और उसमे जो पहाड़ी है उनकी परछाई दिख रही अं सिमिंगपूल मे सिमिंगपूल देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये सिमिंगपूल काफी अच्छा लग रहा है।

देखो ये जो यहाँ से देखो बड़ी बड़ी पहाड़े है बीच मे चट्टान के बीच मे पानी भी गिर रहा है ये झरना है ये जो झरना कहा है पहाड़ियों के बीच मे है जो की कहा है सिंदुदुर्गा--

वहा पे लोग सब लोग आते है फोटो वगेरा निकलवाते ऐसे ही ये यदी लग रहा है देखो ये फत्तर डला है। काफी अच्छा लगता है ये पार्क है।

ये देखिये ये जो दिख रहा है ये जो है गाड़ी का अं गाड़ी का फ्री सर्विस कैंप जो कहा है सिंधुदुर्ग मे इस्थिथ है।

ये जो मंदिर है जो सिंधुदुर्ग मे है काफी पुराना दिख रहा है।

काफी अच्छा नजारा है ये देखो पत्थर पत्थरोंकी जो ये चट्टानें है उनके बीच में से पानी निकल रहा है।

अमिगेशन इसका नेम है और काफी बड़ा ये देखो कितनी सारी और ये सब है।